बिल्डिंग में वाइट कलर का पेंट है बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगा है।

बिल्डिंग में के ऊपर बादल हैं बादल का रंग काला है।

ग्रीन कलर की फर्स में गमले रखे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक स्टोर है स्टोर में सफेद रंग का कलर है।

स्टोर में पंखा है और उसका रंग सफेद है।

जिसकी दीवाल आसमानी रंग की है --

एक आदमी है जिसने वाइट कलर के शर्ट ब्लू कलर की पेंट पहनी हुई है एक लड़की है जिसने --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ बिल्डिंग बनी है जिसमें दो फोटो लगी हैं फोटो में लड़कियाँ ने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहाँ पर रोड में गाड़ी चल रही हैं स्कूटी का रंग बैंगनी है।

ओटी में एक आदमी बैठा हुआ है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं आटो चल्ली पीले कलर की काले कलर की है।

इसकी जो फर्स है वो ग्रे कलर की है इसके अगल-बगल ग्रीन हरे पेड़-पौधे हैं।

पीले रंग के और लाल रंग के आईडिया लिखा है --

यहाँ की जो फर्श है जमीन है वो ग्रे कलर की है आसमान सफेद है।

यहाँ पर चारों तरफ हरे पेड़-पौधे --

यहाँ पर आसपास बसें टेंपो खड़ी हैं जो सफेद रंग की पीले रंग की लाल रंग की हैं।

जो सफेद रंग की है यहाँ का आसमान सफेद कलर आसमानी कलर का है।

यहाँ के ऊपर आसपास हरे पेड़-पौधे हैं यहाँ की जो फर्स है वो ग्रीन कलर की है।

लाल रंग की लीड लगाई है।

इसके आसपास सिलेंडर गैस रखे हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग है जहाँ सुखदेव पैलेस लिखा है यहाँ का आसमान नीला है।

जहाँ पर दो सफेद रंग की गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ की जो फर्श है वो --

जहाँ पर आसमान सफेद रंग का है आसपास हरे पेड़-पौधे हैं --

यहाँ पर कि जो फर्स है वो हरी रंग की है दीवारें ऑरेंज --

यहाँ पर सूर्य पीले रंग का है यहाँ पर आसमान पीला रंग का है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक ऑफिस है।

जहाँ पर जिला परिषद डार्क बंगला किशनगंज लिखा हुआ है यहाँ का जो गेट है वो भूरे रंग का है।

यहाँ एलो प्लेन जो है वो सफेद और नीले रंग का है यहाँ एक आदमी हरे रंग की --

यहाँ की जो फर्स है वो भूरे रंग की है आसपास --

यहाँ की जो जमीन है वो काले और सफेद रंग की है।

यहाँ पर दो बैनर लगे बैनर में एक लड़के ने पिंक कलर --

यहाँ एक आदमी खड़ा है जिसने ब्लू कलर की शर्ट काले कलर की पेंट पहनी हुई है।